तस्वीर में एक मेदान नजर आ रहा हैं--

अ लाइटें जलती हुई नजर आ रही --

एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है आस-पास हरियाली है और एक मन्दिर की तरह दृश्य है जिसकी ऊंचाई पर एक मूर्ति सी बनी हुई है आस-पास और भी इमारते है।

इस तस्वीर मे एक हवाईअड्डा है जहां पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है पीछे एक टेंट बना हुआ है आसमान नजर आ रहा है।

काला फर्श है आसमान नज़र आ रहा है इ खिड़कियों में से।

इस तस्वीर में एक अस्पताल की जवा लग रही है जहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां है फर्श है घड़ी नजर आ रही है |